नजरिया दिखाई आ रहा है जों एक पहाड़ है। वहां पहाड़ के बिच में एक रोड है जहां से लोग अपनी आवा-जावी व घूम-फिर सकते हैं।

जैसे की हमे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है की यहाँ पर एक मंदीर है खूब जो की खुबसूरत सा भगवान जी का मंदिर है।

वाटर पार्क है जहां लोग अपनी मस्ती करने आयें हैं। छोटे से छोटे व बड़े से बड़े लोग यहाँ पानी में आनंद उठा रहे हैं।

बोहोत सारे पंखे वह लाइटे लगी हुई हैं यहाँ लोग अपने बॉडी और फिटनेस के लिए आते हैं यहाँ बोहोत सलीके के जिम मशीन भी नज़र आ रा --

व्यू रेस्टोरेंट है जहाँ पे तीनो प्रकार का भोजन मिलता है व स्नैक्स भी मिलते हैं।

जहाँ की चारो ओर हरी-भरी हो रखा है जो की बोहोत सुन्दर लग रहा है वहाँ बीच में एक सड़क है।

जैसे कि इस तस्वीर में हमें दो मंजिले बिल्डिंग नज़र आ रही है जो की बोहोत लम्बी व चौड़ी है।

जैसे की हम देख सकते हैं इस तस्वीर में एक बहुत सुंदर विएव दिखाई दे रहा है जो कि पहाड़ो का व्यू है और यहाँ पे आगे --

पेड़ भी हैं बड़े-बड़े और जो मौसम है वह बोहोत सुहाना है अच्छा है।

जैसे की इस तस्वीर के माध्यम से हमे नज़र आ रहा है की यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ हैं।

व्हा उसके पीछे ही हमे कुछ तस्वीरे नज़र आ रही हैं वहां जो पीछे की सजावटी हैं वह भी बोहोत सुन्दर सी नज़र आ रही है।

जैसे की इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है की यह एक इंस्टिट्यूट है जो कि मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का है।

इस तस्वीर में हमें एक झील दिखाई दे रही है।

और रोड के ऊपर एक नीली कलर की --

पाइप बिछी हुई है जिमसे की पानी आ रहा है।